पेड़ के पास चबूतरा छप्पर बनाया हुआ है।

यह एक पानी गिरने वाला पुल बनाया गया है।

इसमें चार गेट दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे है।

इसमें हरा गेट लगा हुआ है।

दिवार पर एक घड़ी लगाया गया है।

बाहर में हरा सा फूल लगाया हुआ है।